इस इमेज में सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बड्डे हैप्पी बड्डे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

और कुछ लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने पहाड़ भी नजर आ रहा है।

और कुर्सी भी नजर आ रही हैं।

एक मस्जिद दिखाई दे रही है।